पीछे देखेंगे तो केले भी टंगे है ऊपर और पीछे बोहोत सारी सब्जियाँ भी रखी है राइट साइड में एक लड़का खड़ा है जो की दुकान में बैठा हुआ है।

और सामने देखेंगे तो ऊपर पहाड़ पड़े हुए है बड़े बड़े पहाड़ के बाजू में छोटे छोटे घास उगी है जिसमे छोटे छोटे फूल निकले हुए हैं सामने किनारा देखो बहुत दूर दिख रहा है

सामने देखेंगे डिवाइडर बने हुए है व्हाइट कलर पेंट हुआ है और सीमेंट वाली जालिया भी लगी हुई है और नीचे जाके बहुत सारा पानी दिख रहा है और ऊपर एक सामने खम्बा लगा --

ये एक व्हाईट कलर का बहुत ही बड़ा घर बना है। जो कि देखेंगे आप उसके ऊपर काफी सारे खंड खंड बने है और निचे भी बहुत सारी खिड़किया बनी है। इस घर में और लेफ्ट से बाउंड्री गई है। व्हाइट कलर की पट्टी घर से जुड़ी हुई--

झंडे के नीचे देखेंगे पिंक कलर का पेंट हुआ है कमरा है और सामने पेड़ निकला है नीचे काफी सारी घासे हैं राइट साइड एक लंबा-सा पेड़--

ये एक कपड़े की दुकान है जहां पे देखेंगे ब्लैक कलर का बोर्ड लगा है और बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ है और उसके आगे पीछे बहुत--

जो कि काफी बड़ा है अंदर काफी सारे पिलर है टीन शेड डला हुआ है ऊपर इसके दो ठो वायर गई हुई है और पीछे तार --

ये एक नदी है जो की काफी बड़ी है| इसमें काफी सारी पानी भरा हुआ है| सामने देखेंगे तो काफी सारे खंभे पाइप लगे हुए हैं और टावर भी दिख रहा है।

यह एक पुलिस स्टेशन है जहां पर देख रहे हैं सामने एक बैंक बना हुआ है और उसपे काफी सारी खिड़कियां लगी हुई है जिसमें लोहे की जाली है।

लेफ्ट में देखेंगे तो एक लकड़ी से बैरल बनाया गया है। जिसके नीचे देखेंगे घर के ऊपर लेफ्ट में लाउडस्पीकर बंधा हुआ हैं और छोटा सा सुखा हुआ पेड़ हैं इसमें।

ये एक मंदिर के अंदर का है। जहा पे देखेंगे बीच मे मूर्ति रखी हे गी और उस के आस पास बहुत सारी मूर्ति बनी हुई है।